पर यहा पर नदी बेह रही है झरना है जिसमे से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है और एक झूला है जो की ब्लु कलर का है।

जिसमे हरी-बरी घास है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे कुछ मिट्टी दिखाई दे रही हैं खुला मैदान है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है कुछ बड़े-बड़े पेड़ है यहा पर जो ओ भी हरे-भरे है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की है इसमें बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ ज़ीने दिखाई दे रहे है ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर।

यहाँ पर हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि व्हाइट कलर की है और इस यहाँ पर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर हमे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे हैं एक खुला मैदान दिखाई दे रहा हैं कुछ बाइक दिखाई दे रहीं हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं खुला आसमान दिखाई--

यहाँ पर हमे एक बस दिखाई दे रही है जोकि व्हाइट कलर की है और रेड कलर की है ईसमे बड़ासा काँच लगा हुआ है।

पर हमे एक बस दिखाई दे रही है जो की वाइट और रेड कलर की है और यहाँ पर हमे पेड़ दिखाई दे रहे है जोकि हरे कलर की है।

कुछ टाइल्स ब्लैक कलर की है कुछ टाइल्स रेड कलर की है और यह पर हमे और भी बसे दिखाई दे रही है एक डस्ट्बिन रखा हुआ।

और यहाँ पर हमे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग व्हाइट कलर की है खुला मैदान दिखाई दे रहा है।